हो होता है। यहाँ पे बोहोत सारे --

बो हर चीज कपड़ा भी मिलता है।

ये बहोत अच्छ हमारे बेगुसराय का नजारा चाहिए तो आपलोग भी देख सकते है की कितना अच्छा --